एक बड़ा सा गेट लगा है। आउन्ड्री लेब लिखा है। आवर सर्विसेज़ लिखा है। कोंटेक्ट नंबर लिखा है।

कुछ कांच रखे हुए है। एक पन्नी मे पैक रखे हुए है। इधर व्हाइट कलर की पन्नी मे कुछ कपड़े पैक रखे हुए है।

बहोत सारी लाइटस् दिख रही है। पीछे बहोत सारी शॉपस भी हैंगी। इधर ये कार करके खड़ी है।

टेबल है। बड़े-बड़े बैग रखे हुए है।

दूर दूर की तरफ बड़े बड़े से पहाड़ दिख रहे है।

एक बाइक रखी हुई है जोकि पूरी तरह से खुली हुई है | इधर बाल्टी रखी हुई है।

इधर बहुत सारी बाईकस्स वगैरह भी रखी हुई है नीचे न्यूज पेपर पड़ा हुआ है।

बड़ा सा घर बना हुआ है इधर कुछ लकड़ियां लगी हुई हैं एक मे दो घर बने हुए हैं।

इधर फ्रूट्स की टेबल रखी हुई है। केले रखे है ऑरेंज रखे है अनार रखे है।

ये एक स्टेट बैंक ए.टी.एम. है इसके अंदर एक अंकल खड़े हुए है इसके बाहर एक अंकल खड़े हुए है।

इक बहोत बड़ी सोप है ये जिस में तेल कंघा साबुन वाबुन --